घर के बाहर की जगह है जहां पर एक दीवार बनी हुई है जिस पर एक आ दो आदमी बैठे हुए हैं। एक आदमी जो फोन पे बात करता हुआ दिखाई दे रहा है।